ऊपर की तरफ एक घड़ी और उसके नीचे दो तीन सिंड्रीया सीनरियाँ लगी दिख रही हैं।

ऊपर की तरफ पंखे लाइटें सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे परदे भी लगे दिखाई दे रहे है।

ऊपर की तरफ पंखे और लाइटे भी दिखाई दे रही है।

तबेलों की छत टीन की है और लोहे की रोड से बनी हुई है।

बहुत सारे आसपास पेड़ और तबेलों में बहुत सारी गाय दिख रही है।

और मेज पर बहोत सारा सामान रखा है।

चर्च में सामने बहोत सारे लोग फोटो खींचा रहे हैं।

और अंदर एक आदमी बैठा समान दिखा रहा है।

पर मेज पर जीरा और नमकीन के पैकेट रखे हैं।